यहाँ पर कई सारी साइकिले दिखाई दे रही है और बहुत से लाइट भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर पुल बंधा है और यहाँ से घेरा पानी दिखाई दे रहा --